और जो है लाल कलर का कप है और उसमें लिखा है।

और द गेट भी है बना।

और लिखा है इस पे उरई सेफ रेस्टोरेंट और पीछे सब मकान है।

और तीन महले कस हैं। आसमान भी दिख रहा है।

और बाहर सब कच्चा जमीन है सब मिट्टी बिखरा हुआ है कचरा --

यहाँ पे मॉल है। मॉल में पारले बिस्कुट और ओ तेल रखा हुआ है।

उनका मूर्ति है सैयां पे और चार लोग दर्शन के लिए आए हैं।

टी-शर्ट और पीछे भी म्म गेट दिख रहा है और दो महलें का मकान भी है यहाँ पे।